जहां मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग हो रही है विभिन्न पार्ट्स बिखरे हुए है और मोटरसाइकिल खड़ी हैं।

जिसमें सफेद और हरे रंग के चित्र से दीवार बनी हुईं हैं हरे रंग का गेट लगा हुआ हैं।

यह कोई दुकान और रेस्तरा तरह की जगह है जिसका नाम सज्जनगढ़ है।

द्वारा बनाया गया है इसमें एक दो पहिया वाहन है और खूब पेड़ पौधे हैं।

यह एक चर्च का दृश्य है।

सूर्य अस्त हो रहा है लालिमा छाई हुई है कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है।